पैर के नीचे कुछ घासे दिखाई दे रही हैं और यहां पर पानी भरा हुआ है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है यहां पर दो लोग खाना खाने के लिए आए हैं।